इ बहु इ होटलवा जे हेको बहुत बड़ा बहुत सुंदर हो यहाँ बहुत आदमी आवो खेल दूर-दूर से खाना पीना तो अमनिया खेल --

इ ऐगो बढ़िया एकदम जे केल पारे खूबसूरत और बड़ा सुंदर बाजार हीको इ बाजार मे ढेर दूर-दूर से आवो हेय आदमी घूरे खतिर इ बजरा मे ढेर तरह के समान मिलो तो सामान लियल परे और बहुत सस्ता सामान मिलो हेय इ बजरा में।

इ गछा के खरदे खतिर आदमी दूर-दूर से आवे हो इ गछा कुल मिले के बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हो इ गछा हर एक तरह से बढ़िया हो

बहुत बढ़िया इसपे डांस करे हो स्टेजवा बहुत बड़ा हो बहुत सुंदर हो देखे मे यहाँ दूर-दूर से लोग आवो हो देखे ली स्टेजवा के और यहाँ मजा करी ले ।